ये गोरखपुर के कलेक्टोरेट का ऑफिस है जिला अधिकारी का ऑफिस है।

और भी यहाँ से कई काम होते है कई टिकेट मिलते हैं। यहाँ से लैटर के लिए लैटर --

ये फोटो हमारे किसानों के मेहनत को दर्शाता हैं।

और यहाँ पे हम अपने या कोई भी अपनी प्रोब्लम सॉल्व --

कई फायदे हैं कस्टमर के काफी सुविधा --

ये बालिकाओं के लिए अच्छा कॉलेज है। यहाँ पे बी _ए बी_एस_सी बी _कॉम एम_कॉम की तैयारी करती हैं बालिकाऐं।

ये महाविद्यालय इसमें बीए बीएससी. और भी काफी चीजों की बालिकाएं तैयारी करती हैं अच्छा --